यहाँ पर एक कैलेंडर टंगा नज़र आ रहा है। दीवार पर एक छोटा पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक तस्बीर भी लगी दिखाई दे रही है जिस पर मोहम्मद लिखा हुआ नजर --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

इस इमेज में एक अ बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके बाहर कुछ बाईक्स खड़ी हुई नजर आ रही है यहां पर कुछ लोग अ पेड़ के नीचे बैठे हुए नजर --

इस इमेज में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है जोकि व्हाइट एंड ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है बिल्डिंग मे काफी सारी खिड़कियां नजर आ रही है जोकि बंद नजर दिखाई दे रही है।

पीछे कुछ घर नजर आ रहे हैं और एक कुर्सी भी रखी हुई दिखाई दे रही है। यहां पर कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। एक व्यक्ति बस के पास खड़ा हुआ नजर आ रहा है।